बहुत ही सुंदर है हाईवे रोड है कार लगा हुआ है बहुत महँगा जगह है।

बहोत ही सुंदर है बहोत ही अच्छा सबके --

मूर्ती लगा दिया बहुत ही अच्छा बहुत ही सुन --

बहुत ही सुंदर है बहुत ही अच्छा है।

बच्चा सब कुछ बना रहे हैं।